काफी अच्छा जगह है। सीढ़ियाों है और अंदर सामान भी मिलता है।

तीन चार ठो पाड़ा भी दिखाई तो पान ठो दे रहा यहाँ से वहाँ तक और पूरा दूर में पूरा नीचे हरा हरा दिख रहा है और --

और उसका ऊपर पेंटिंग हारा कलर से किया गया है| नीचे का अस्थल भी काफी अच्छा है| वहाँ तक रोड भी पीच है सुन्दर है।